यहाँ पर सामने एक बीओएससीएच सर्विस का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

पीछे डालियाँ दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है उसमें कार्टून का एक बॉक्स रखा हुआ है।